यह अपना सुपरमार्ट है।

यहां आइसक्रीम का फिगर बना हुआ है।

यह बहुत बड़ा क्लासरूम है यहां बहुत सारा बेंच लगा हुआ है।

ब्रांच में बहुत सारा किताब कॉपी रखा हुआ है।

यहां एक बेड लगा हुआ है उसके ऊपर डिजाइन का एक बेल शीट रखा हुआ है।

यहां बगल में दो आदमी का पैर दिख रहा है।

यहां दीवार में बहुत सारा रंग बिरंगा लाइटिंग लगा हुआ हैं।

यहां बहुत सारा टेंपू रखा हुआ है।

बगल में बहुत सारा गुलदस्ता है जिसमें सारा पौधा लगा हुआ है।

यहां बहुत सारा डेकोरेट किया हुआ है जो रंग बिरंग का लीची बॉल लगाया हुआ हैं।

बगल में एक ए_सी है जो सफेद कलर का है नीचे दो बोर्ड लगा हुआ है।

बगल में बहुत बड़ा पेड़ है।

यहाँ बहुत सारा समान रखा हुआ है।

बगल में एक झोपड़ी बना हुआ है जिसके ऊपर में बहुत सारा झंडा लगा हुआ है।

यहां दीवाल में पोस्टर भी लगा हुआ है।

मैं बाहर में एक पेड़ है।

बगल में में दो झालर भी लगा हुआ है।

ऊपर में हंड्रेड परसेंट लिखा हुआ है।

रसूल भी बहुत सारा रखा हुआ है।

जिसका हाथ में एग वॉच है।

यह बहुत बड़ा फील्ड है यहां नीचे बहुत सारा हरा भरा घास उगा हुआ है।

यहां बहुत बड़ा क्लासरूम है यहां एक बहुत बड़ा बोर्ड है।

नीचे बहुत सारे जानवर भी है।

यहां त्रिशूल जैसा बना हुआ भी गेट में लगा हुआ है।

एक टेबुल भी है जो सफेद कलर का है।

बगल में बहुत सारा लाइटिंग जल रहा है जो रंग बिरंगा है।